और कांच के शीशे लगे हुए हैं और वाइट् कलर का पुता हुआ है। धूप निकली हुई है।

पीछे ट्रॅक्टर लगा हुआ है।

वाइट कलर की पुती हुई है बोट जो में कुछ सामान अंदर धरा हुआ है और धूप निकली हुई है।

यहाँ पे एक शॉप है। शॉप --

काफी लोग हेंगे अंदर ले --

पीले रंग का पुता हुआ है मकान।

यहाँ शोकेस में बोहोत सारी मिठाइयां रखी हुई हेंगी।

यहाँ पे एक स्कूल है हरे रंग का।

हरे रंग की पेन है। सफ़ेद आसमान है।

सजा हुआ है। खूब जों परदे अर्दे लगे हुए हैं। कुर्सिये रखी हुई हैं।

जोने पेड़ लगे हुए हैं। धुप निकली हुई हेगी।

अ हरे रंग ला हरे की बुशर्ट पहने हुए एक आदमी।

वाइट कलर की बुशर्ट जो है पहने हुए है बुके रखी हुई हैंगी।

बहो से खिड़कियें हैंगी वो सारी।

जो जोने आसमान है हरे रंग का।

बहोत सारे कपडे हेंगे टंगे हुए हैं।

लाइटें लगी हुई हैंगी। हर रंग के कपड़े हैंगे।